सिर में कपडा बांधके काम कर रही है रेत है ईट सब है खिड़की बनाया गया है दरवाजे हैं ।

यहाँ फ्रूट्स वाला दुकान है यहाँ यहाँ बहोत सारे फ्रूट्स है ऑरेंज है एप्पल है पपीता है आम है।